और मूर्तियों पे लेहंगे और साड़ियां पहना कर रखी गई हैं ताकि लोग उनको देख सके।

खम्भे बने है वो भी नारंगी रंग के है। वहां पे है लाल रंग की एक कार है।

उसके अंदर की जो दीवारे है वो काले और पिले रंग की पेण्ट से सजाई गई है बहोत सुन्दर नकासी की गई है।

इस तस्वीर में जो इमारत का दृश्य दिखाया गया है।

होटल का जो मुख्य द्वार है उसको फूलों से सजाया गया है।

और होटल का अअ नाम लिखा है होटल र्गव।

इस तस्वीर मे एक लड़के को दिखाया गया है जिसने लाल रंग की शर्ट और नील रंग की पैंट पहनी है और वो एक किसती में खड़ा है |

कश्ती जो है वो नदी के किनारे खड़ी है और उसके पीछे --

उसके अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है | बैंक का जो बोर्ड है वो नारंगी और सफेद रंग का है ।

कोई भी व्यक्ति या बच्चा कोई भी यहां पे सैर करने नहीं आया लेकिन वहां पे बहुत पेड़ है।